अस्पताल का द्रश्य है जहा पर लाइन लगा कर सभी लोग पर्चे बनवा रहे है एक पुरुष की लाइन है और एक महिलाओ की लाइन है।

आसमान दिख रहा है और चारो तरफ हरे-भरे पेड़-पौधे दिख रहें और यह बहोत लंबा पूल है जो दूर तक दिखाई दे रहा है। इसमे कोई भी सवारी नहीं है।

रात का समय है एक बस स्टैंड पे एक बस खड़ी है इसपे लिखा है हॉट एंड कूल ए.सी. शायद ये दानिश ट्रेवल्स की बस है।

और आर.पी. ज्वेलर्स हैं और एक हैप्पी फैशन की दुकान है जो की रेडीमेड कपड़ो की दुकान लग रही है और एक ज्वेलर्स की दुकान है इस के बाद ढ़ेर सारे वाहनों --